और हाउस भी दिख रहे होंगे आपको या बहोत से लोग है अभी यहाँ पर खड़े हुए और बादल भी पेड़ दिख रहे --

ये हॉल पब्लिक स्कूल देख रहे होंगे आप ये गेट बना हुआ है और बहुत बड़ा --

और स्कूल देख रहा है का है ये स्कूल और यहाँ जाली लगी हुई है।

और यहाँ पे आपको ये ग्राउंड किते मस्त यहाँ से लगेंगे |

आना श्री का एक शो रूम दिख रहा रहा होगा। अ लेडिज के कपड़े मिलते हैं पर महंगे महंगे दिख रहे होंगे।